इस चित्र मे आसमान दिखाई दे रहा है।

इस चित्र मे कुछ पौधे दिखाई दे रहे है| जमीन पर हरी-भरी ग्रास दिखाई दे रही है और हरी-भरी ग्रास के बीच मे एक नल है।

अंदर से पानी ऊपर की और जा रहा है और ऊपर से पानी वही पर गिर रहा है ऐसे दिखाई दे रहा है धन्यवाद।

इधर मै नीला आसमान दिखाई दे रहा है एक बिल्डिंग दिखाई रही है बिल्डिंग का एक दरवाजा और ऊपर मै एक खिड़की दिखाई दे रही है।

आ तेल की धबकी साबुन सर्फ़ ओर बाकी इत्यादि चीजें रखी हुई दिखाई दे रही है धन्यवाद।

और एक आदमी के हाथ में पानी पूरी का रगरा और उसके ऊपर मसाला डाल के प्याज डालते हुए नजर आ रहा है धन्य-वाद ।

इस चित्र में लक्ज़री बस के अंदर का नजारा दिखाया जा रहा है| लक्ज़री बस के अंदर कुछ सेटरखी हुई है और सीटों के सीटों के ऊपर कुछ कपड़ा दिखाई दे रहा है।

और सीट का कलर है नीला और ऊपर बालकनी जैसे दिखाई दे रहा है धन्यवाद।

चित्र में एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है| बिल्डिंग के ऊपर एक बोर्ड है और उसे बोर्ड पर एक औरत का चित्र दिखाई दे रहा है।